शीशों के शोरूम में बहोत सारे कांच के शीशे ही शीशे दिखाई दे रहे हैं।

क्लीनिक में बहुत सारी मशीने है।